आदमी बाड़ सन। मेहरारू बाड़ी सन पूजा करतारी सन मन्दिर केने खड़ा बाड़ी सन बइठल बाड़ी सन कराह दे तारी सन |

चश्मा पहनले बा। कुर्सी पर आदमी बैठल बा। टेंट लागल बा। देखे में अच्छा --